और यहां पे फर्श भी बनाया गया है वो टाइल्स द्वारा बनाया गया है।

जहां पे बहुत सारे आदमी एवं बच्चे नहा रहे हैं।

एवं बहुत सारे कार एवं स्कूटी तथा बाइक भी आई हुई है।

जो जिसको धो रहे हैं और पीछे में बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं।

यह एक सब्जी मंडी का दृश्य है जहां पर बहुत सारे लेडिस सब्जी को बेच रहे हैं।

और पीछे में एक बहुत बड़ा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

इसका फर्श कारपेट द्वारा बनाया गया है जो ग्रीन कलर के कारपेट से बनाया गया है।

तथा बीच में एक खनतर टाइप का रास्ता भी दिखाई दे रहा है।

और पीछे में एक सूरज भी दिखाई दे रही है।

इसके दीवाल पर पुटी पेंट भी किया गया है।

अपार्टमेंट में पेंट किया गया है अ उस पेट का कलर गोल्ड एवं व्हाइट दिखाई दे रहा है।

और एक इस्कूटी भी खड़ी है और एक बहुत बड़ा बैनर ल लगाया हुआ है जिसके ऊपर टू लेट लिखा गया है।

जिसके ऊपर गोलाकार टायर बिछाया गया है।

था एक आदमी पत्थर पर बैठा हुआ है।

यह एक शादी के डेकोरेशन का दृश्य है।

यह एक चर्च का दृश्य है यहां पे बहुत सारे आदमी आए हुए हैं।

और एक कूड़ा दान भी रखा हुआ है और तथा झाड़ू भी रखी गई है।

ओर एक आदमी बैठा हुआ है और लोहे के एंगल की मदद से दरवाजा भी बनाया गया है।

यह एक टैगोर हिल पार्क का दृश्य है जहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे एवं पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

उस किराने स्टोर में एक आदमी भी खड़े हैं।

यह एक एग्जाम सेंटर का दृश्य है जहां पर बहुत सारे छात्र छात्राएं आए हुए हैं।

इसके किनारे से एक फुटपाथ भी निकाला गया है।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

यह एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट का दृश्य है।